और यहाँ पे पर अलग अ अगल-बगल में दुकान बंद परी हुई है और यहाँ पर एक कम लैपटॉप रखा हुआ है बगल में एक वोड लगल है।

डब्बा रखा हुआ है एक आदमी है जो बाइक पर है जो बातचीत कर रहा है एक आदमी--

अगल बगल में बहुत सारा गारी है और यहां पे गारी का नाम है पुष्प--

ये एक तस्बी तस्बीर में एक मुर्गी फारम का लिया गया है ये बहुत फैला हुआ है बहुत सारे इसमें मुर्गा रखा हुआ है।

बहुत सारे यहां पर आदमी है कुछ आदमी उधर देख रहे हैं एक बुरिया है जो।

मचान के ईधर देख रहा है दु कुछ दुकान भी एक आदमी साइकल से रहल ह।

एक झोपड़ी लगा के आदमी वहां पर बैठा हुआ है कुछ आदमी चल रहा है उसके ऊपर।

यह तस्वीर एक बहुत पुराना हवेली का देखने में लग रहा है इसके नीचे।

और ये यहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं और कुछ आदमी गाड़ी पे बैठे हुए हैं कुछ अंदर में कुर्सी लगाकर--

और इसके इस दुकान का नाम है किसान कृषि केंद्र और इसके बगल में एक और पोस्टर जो लगा इसमें लिखा हुआ है दिवाली--

इसमें सब खरीदारी कर रहे हैं इसमें लाइट भी जल रहा है कुछ मोटर का सामान मिल रहा है एक आदमी है जो मोटर बना रहल है।